यह एक पराठे का दृश्य है।

जो कि बहोत ही डिलीशियस दिखाई दे रहे हैं।

जहां पे हमें बहोत सारे टमाटर दिखाई दे रहे हैं।

बगल में एक चार्जर सॉकेट दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक फलक लगी हुई है।

यहां पे बहोत सारे पत्थर और कुछ चट्टान भी दिखाई दे रहे--

और नीचे हरे भरे घास लगे हुए हैं।

तथा एक अंकल और दो आंटीयां हमें मोमबत्ती जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बगल में एक बोर्ड लगी हुई है जिसमे लिखा हुआ है नो पार्किंग ।

यह किसी गैरेज का दृश्य है जहां पे हमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी को धोते हुए दिखाई दे रहा है।

तथा माथे में एक कैप लगाए हुए हैं तथा स्कॉर्पियो का कलर वाइट कलर का है तथा ब्लैक चक्के लगे हुए हैं।

तथा कार के ऊपर में लिखा हुआ है शॉर्ट टाइम डीप मेमोरी इन हार्ट --

उसमें स्वामी विवेकानंद का एक मूर्ति लगा हुआ है।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

सामने में बहोत सारे रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं।

यह एक जगह का दृश्य है जहां पे एक लाल फूल के वृक्ष लगे हुए हैं।

तथा एक मछली के ऊपर की चमड़ी को छील दिया गया है।

यह एक जगह का दृश्य है जहां पे बहुत सारे रंग बिरंगे छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं।

यह कोई जगह का दृश्य है जहां पे एक बैनर में ए_टी_एम लिखा हुआ है।

था यहां पर बहुत सारे अंकल दिखाई दे रहे हैं मकई के पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं।

दो अंकल खड़े दिखाई दे रहे हैं जो की ब्लैक कलर के सूट पहने हैं और बहोत सारे रंग बिरंगे लाइटे लगाई हुई है।

तथा एक आंटी भी दिखाई दे रहे हैं।

था हमें एक बोतल दिखाई दे रहे हैं जिसका ढक्कन ब्लू कलर का है।

इस बिल्डिंग का रंग हल्के व्हाइट और लाल कलर में दिखाई दे रहे हैं और मिनी प्लांट भी लगा हुआ है।

तथा बहुत सारे मोबिल के बोतल दिखाई दे रहे हैं।